आला भी रखे हुए है।

ये ब्लू कलर कि है थोड़ा-थोड़ा काला भी है इसमें शीशा लगा हुआ है।